एक लाल कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।

कपड़ों की दुकान बनी हुई है और उसमे--

खड़ी हुई है और उसके सामने एक स्टेट बैंक ए_टी_एम एस_बी_आई का लगा हुआ है और उसके आगे --

व्यक्ति काले कलर के कपड़ो मे खड़े हुए हैं और कुछ महिला साथ मे खड़ी हुई है।

दुकान बनी हुई है इसमें लकड़ी के फर्नीचर के साथ --

में सामान रखा हुआ है यहां पर ऊपर के खनो में--

यहां पर कुछ बेंच रखे हुए हैं एक यहां पर नीले कलर का डस्टबिन रखा हुआ है एक यहां पर कूलर रखा हुआ --

खड़ी हुई है और उनके पास एक बाल्टी रखी हुई है।

और उसके पास में दो महिलाएं बैठी हुई है और यहां दीवार पर --

एक गोदाम बना हुआ है इस गोदाम में कुछ कट्टे --

लालगढ़ बीकानेर का बोर्ड लगा हुआ है एक यहां पर पेड़ है बड़ा सा और एक यहां पर प्याऊ --